इस चित्र में एक बहोत बड़ा हॉल है जोकि बहोत बड़ा कमरा है।

और जाल भी बना है लोहे का साइड में और एक दीवार है।

और एक बूढी औरत भी जाती हुई नजर आ रही है।

और एक ड्रम भी है यहां पे जो दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारी दुकाने हैं वैसे तो फूलों की बहुत लोग फूल खरीदने के लिए आए हैं।